ये यहां पे आप देख सकते हो ये नाव दिख रही--

ये यहां पे देख सकते हो ये रूम दिख रहा है और यहां--

देख सकते होंगे यहां पे फूलों में पत्ती लगी हुई है और यहां पे देख सकते हो पर दिख रहा है।

आप देख सकते हो ये लड़कीयां बैठी हुई है ये--

यहां पे देख सकते हो आसमान भी दिख रहा है यहां पे--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

ये यहां ये यहां देख सकते हो ये आसमान दिख रहा --

और यहां पे आप देख सकते हो--

मोबिल लिखा हुआ है ये यहां पे आप देख सकते हो--

लाइट के शहर भी देख रहे हैं ये यहां पे।

हेलमेट वगैरह भी रखे हुए है यहां पे आप देख सकते हो।